टावर है जिस टावर में बहुत सारे जनरेटर खड़े हुए हैं इसके बगल में बहुत सारे छोटे बड़े पौधे और नीचे घास भी है इसके बगल में एक लौकी का झाड़ झमरा लगा हुआ है।

अच्छा दृश्य है जिसमें बहुत सारे बल्ब और कुर्सियाँ टेबुल भी लगे हुए हैं इसके ऊपर गिलास और फूल भी रखे हुए हैं।

उजले कलर का डिबे में फूल रखा गया है जिसके बगल में बोहोत सारे फल और कुर्सियां भी टेबल भी रखे हुए हैं इसके बगल में एक जंगले हैं जो जाली तरह के बनाया गया है|

दुकान के ऊपर घर भी है जो पीले और उजले कलर से पेंट किया गया है।